ये जो है न ये परचून्स की दुकान है और जो न है इसमें जो है काफी कुरकुरे वगैरा-वगैरा मिलते हैं और साबुन और पैम्प --

वगैरा भी मिल जाते हैं। जैसे कि अंडे इसमें रखे हुए हैं और टॉफी वगैरा भी है और जो है न ये बहुत ही अच्छी दुकान है और जो बहुत ही बेहतरीन है।

जैसे कि लड्डू पेड़ा और जैनेस में और अलग- अलग तरह की मिठाई जैसे कि गुलाब जामुन्स वैगेरह और ये एक शीशे के बॉक्स में पैक है।

और जने यहाँ पर काफी अच्छी बिल्डिंग बनी है। ये काफी फ्लोर में है और इसमें काफी अच्छा काम भी हुआ हुआ है और जाना दो बन्दे खड़े हैं। जिसमे एक इंजीनियर है।

काफी पानी दिख रहा है और जो इस समंदर में जो है काफी मछलियां भी होंगी और ये बहोत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है।

जिन्हे की मेडिकल स्टोर वैगेरह है और जिन्हे यहाँ पे काफी चीजे मिलती है | ये शहरी शॉप लग रही है।

ये जो है न एग्स बहोत बड़ी जो है न नदी है और जो है न इसमें जो है दो मछुआरे जो हैं न अपनी नाव को लेकर चला रहे हैं।

जो है न एक बहोत ही अच्छा जो है न बगीचा टाइप लगा हुआ है जो कि बहोत ज्यादा जो है न खूबसूरत है। इसका रोड भी जो है न साफ है।